कुछ रेलिंग्स लगाई गई हैं सामने एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है बाहर कि तरफ कुछ पेड़ भी लगाये गए हैं और कुछ फोर-व्हीलर पार्क कि गई हैं।

पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है यहा पर कुछ टेंट भी लगाए गए है और साइड मे बैठने के लिए चेअर्स भी लगी हुई है।

गेट लगा है साइड मे हमे कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और जो इस गुम्मत को ढ़केल रहे है।

एक नई ऑटो खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो काले और पीले रंग से पेंट की गयी है इसके ऊपर एक फूलों की माला लगाई गयी है और हरे रंग के कुछ पत्ते लगाए गए है ऑटो के बगल मे एक वॅन खड़ी है।

बाहर की तरफ़ एक रोड है जिसमे कुछ बाइके पार्क कियी गयी है और साइड में बहुत सारे ऑटो खड़े हुए है और बाहर की तरफ़ एक पार्किंग एरिया बना है जिसमे बहुत सारे पेड़ लगाए गये है।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

जिस पर एक काले रंग का एक स्टेच्यू रखा हुआ है अंदर की तरफ़ जाने का दो बोर्ड लगाए गए है जो लाल रंग के है। उनपे नोटिस लगा हुआ है।

एक फैक्ट्री है जिस मे कुछ मशीने लगाई गई है जिसपे कंडेन्स ऑइल सेपरेटर और--

यहाँ पर हमे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिस की तरफ जाते ही मिट्टी की ये पतली रोड दिखाई दे रही है रोड के बगल मे कुछ पीले रंग के पेड लगाए गए है।

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिस में कुछ सोफ़े कुछ चेयर्स और टेबल लगाई गई है।

और उसके ऊपर सफेद रंग की कुछ प्लेटे रखी हुई है।

टिश्यू पेपर बॉक्स रखा हुवा है पीछे की तरफ एक छोटी सी ड्रावर है जो की भूरे रंग की है और कुछ कर्टेंस भी लगाए गए ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइटे लगी है।

एक बहुत बड़ीसी नदी दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारा पानी हुआ है साइड मे नीछे की तरफ़ कुछ हरियाली और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और नदी की साइड मे एक लोहे की रेल्लिंग भी लगाई गयी है।